यहां पे हमे एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिख रहा है बहुत सी गाड़ियां खड़ी हुई दिख रही है एक कार एक बाइक खड़ी एक साइकिल खड़ी है और ऊपर आसमान दिख रहा हैऔर सेट में पीले रंग का झंडा लगा हुआ है अंदर दुकाने दिख रही है यह आटो पार्ट्स की दुकानें हैं और यहां सीढ़ियां बनी हुई है।

और उसके आगे एक्स पेड़ है। पेड़ की शाखों पर कुछ स्टीकर्स लगे हैं और नीचे कुछ कलाकृतियाँ बनी हुई हैं।

उसके पीछे एक घर है इसमें एक दीवाल लाल है। एक खिड़की दिख रही है उसमें कांच लगे हुए हैं।

एक हल्के बैगनी कलर के फुल हैं और यहाँ पर कुछ सफ़ेद रंग के फुल है जिसमें बीच में बैगनी कलर के --

पराग कर दिख रहे है और पत्ते दोनों के एक जैसे है।

कुछ फेंसिंग की गयी है जिस और तारों के ऊपर पौधों को लगाया गया है जिससे यह फेंसिंग की गयी है उससे आगे हमें कुछ गेट दिख रहे हैं कुछ रेलिंग बनी हुई दिख रही हैं और बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

एक कच्चा मैदान बना हुआ दिख रहा है उसके पास कुछ पक्का रोड बना है वहां पर काले रंग का एक मुख्य द्वार बना हुआ है।